है और आगे में पुड़िया टांगा हुआ।

हैं जिसका गिरा हुआ है।

और उस पर स्टिकर --

यहां एक झरने जैसा बना हुआ है।

लोहे की छर की दुकान--